एक रूम का फोटो यहा है एक बड़ा सा बेड रखा हुआ है एक सिंगल बेड डला हुआ है एक पर्दे लगे हैं खिड़की खुली हुई हैं खिड़कियों मे तो रोशनी आ रही है।

ये कुछ सम्मेलन का हो रहा है जहां पर बहुत सारे टेबल कुर्सी लगाए गए हैं सफेद कलर की कुर्सियां हैं।

दो सर्कल में तीन सर्कल बने हुए हैं जो हरे कलर हैं अंदर वाइट कलर के छेद है।

दो ठो दो फोटो में एक पहाड़ का फोटो है और एक --

ये घर है जो की अभी काम चालू है कंस्ट्रक्शन का नीचे लकड़ी का घर बना हु--

कार खड़ी हुई है ईस्ट मॉल का ये पॉइंट फॉरेस्ट रिजॉर्ट हैं।

यहां कुछ गमले रखे हुए हैं का दरवाजा है लकड़ी की कुछ लगी हुई है।

पीछे पेड़-पौधे हैं पहाड़ पे घर बना हुआ है आसमान नीला है कुछ वाइट बादल भी हैं इस साइड भी कुछ झाड़ हैं।

ये एक स्कूल है यहां स्टाफ रूम है और लोग घूम रहे हैं बहुत से कुछ एक अंकल बात करते हुए जा रहे हैं।

और नीचे काई लगी हुई है सड़ी है।

जहां पे कुछ कपड़े टके हुए हैं ऊपर कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं।

यहां दो भईया इक घर बन रहा है वहा बैठे हुए दिख रहे फोटो मे।

यह कॉस्मेटिक की दुकान है जहां पे जॉय फ्रूट का लोटस

की क्रीम गार्नियर क्रीम फेस वॉश क्रीम्स बोरोप्लस फेयर एंड लवली

एक मुह पे बांधके औरत बैठी हुई है सर्दी का माहौल है जहां पे--

जो नीले कपड़े पहने हुए हैं दो लोग कुछ खा रहे हैं सीढ़ी पे --